यहाँ पर ची तीन चार गाड़ियां रखी हैं यहां कुछ--

यहाँ पर फ्रेंड बेकरी का बोर्ड लगा हुआ है फ्रेंड बेकरी बदरी धाम ये बदरी धाम की बेकरी हैं।

ये मोर है मोर एक लड़की पे बैठा हुआ है कुछ कपड़े भी हैं।

ट्रैफिक जमा जाम हो गया है जैसे ट्रैन आती तब रुक--

ऊपर सेकंड फ्लोर पे फ़ूड बुक --

और कोई नजर नहीं आए--

यहाँ पर चारो तरफ हरियाली नजर आ रही है रोड है रोड पे से --

एयरटेल का बोर्ड लगा हुआ हैं।

ये किसी गांव का नज़ारा है।

वो ऊपर हाथ करते हुए नज़ारे है यहाँ सीखने वाला भी है वो भी--

सब सावधानी से पढ़ाई कर रहे है।

ये रात का है अंधेरा-अंधेरा नजर आ रहा है।